यह एक दृश्य है जहां पर छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित करते हुए --

यह फीमेल जनरल वॉर्ड है। जहाँ पर फीमेल को --

ये रात के दस बजे रवन्ना होगा।

यह अधिकतर महिला यूज़ करती है शादी के बाद।

ऊंचे-ऊंचे पेड़ लगा रखे हैं। ये हरे-भरे हैं। ये पार्क के --

पेड़ ही पेड़ जंगल है।

बेंच अभी खाली है।

उसके बीच में एक चिमनी है।

फोटो हमें नजर आ रही है।

उसके बाहर छोटे-छोटे पेड़ लगा रखे हैं।

यह बच्चा छोटा है। यह बहोत खुश हो रहा है फोटो क्लिक कराते हुये ।

बेल्ट लगा रखी है जिससे ये नीचे नहीं गिर जाए। यह --

यह पाइप काला रंग का है। पीले रंग की टोपी डाल रखी है।

यह तस्वीर एक लड़के की है।

जहाँ पर हमे अनेक प्रकार की के.टी.एम बाइक --

एफ तीन सौ तीस तीन सौ तीस सीसी --

आदमी खड़े हैं जोकि व्हाइट रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

एक कैफै का है। कैफै के अंदर --